काफी बड़ी पार्क और पार्क के बीचों बीच--

और काफी सारे बच्चों ने डेकोरेशन अ ब्लू --

अपर यहां पे काफी सारी चीज यहां पे एक ट्रक का टायर जिसे--

काफी बड़ा करेंना स्टोर यहां पे विम बार नैपकिन --

फिटनेस जिम यहां पे येलो ब्लैक --

और काफी सारे सूट यहां पे ऐसे कि पर्दे दिख रहे हैं सात इंच नौ इंच --